ई तस्वीरं म जु छा हम देख सकदों कि यखम कुछ द्वी जु छन नौन्याल बैठ्यां छन स्कूल का भित्तर उंका अग्वाडी हम देख सकंदु कि एक कंप्यूटर छा रखियुं।

ईं तस्वीरम जु छा हम तें दिखेण लग्युं यु बाइक स्कूटी कु कोई शोरूमा ये का भितर हम तें दिखेण लग्यां अलग अलग प्रकारा की बाइक और स्कूटी जु छ खड़ीन होईं।

ये चित्र मा जी जु छा हम तें दिखेण लग्युं कि एक बड़ी सी नदी हन दिखेणी।

बड़ु सा इक टी.वी.एस कु जु छा उं का अपड़ु बोर्ड छा लगायुं यख हम ते बहोत लाइट भीन दिखेणी अलग अलग रंग की स्कूटी अर बाइक जु छ खड़ी होईं यखम।